यहाँ पर हमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाल काटते हुए नजर आ रहा है। वह बालों मे मशीन लगा रहा है।

दुकान के बाहर एक मोटर साइकिल जो की सफेद कलर की है वह भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है| उसके पीछे नदी दिखाई दे रही है नदी में पुल भी दिखाई दे रहा है।

बैंक का गेट कांच का है और उसके ऊपर लाइट भी लगे हुए हैं।

यहाँ पर हमे एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमे तीन मूर्तियां रखी हुई है।

उसके आजू-बाजू में दो फोटो टंगी हुई दिखाई दे रही है नीचे दो व्यक्ति बैठे हुए हैं एक व्यक्ति हाथों में माइक लिए है और यहाँ पर कुर्सियां भी दिखा --